सूखे दिख रहे कुछ कपडे रैक दिख रहे हे | यह पर अस पास कुछ पिंक ओर वाइट वगेरा कलर के ओर आसमान दिख रहे हे |आसमान ब्लू कलर मे दिख रहे है |

कुछ पेड़ की डालिया लटकी हुए दिख रही है और यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रहा है | बिल्डिंग का पेंटिंग कलर जो है | फिरोज़ी कलर दिख रहा है| एक उसके पास में है जो वाइट दिख रहा है और कुछ विंडो दिख रही है |

हमे काफी बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है | और ये मंदिर है काफी प्रसंग आते हुए दिख रहे है | आस पास में काफी सारी सीढ़िया भी दिख है | कुछ प्रसंग बैठे हुए दिख रहे है साइड में एक प्रसंग जा रहा है जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है --